बिल्डिंग है यह बिल्डिंग काफी बड़ा है इस बिल्डिंग का गेट शीशे का है इस बिल्डिंग के किनारे बैनर लगे हुए हैं।

इस गोदरेज के सामने एक टेबुल है यहाँ पर एक बोटल एवं एक डब्बे रखे हुए हैं।

यहाँ पर जलना भी से लगी हुई है इस घर में एक मारुति खड़ा है वह बरामदा पर है इस घर के किनारे एक सड़क भी है ।

यहाँ पर छोटे-छोटे पौधे भी हैं यहाँ पर एक लड़का पाइप से पानी दे रहा है और फूल की पेड़ों में पानी दे रहा हैं।

सड़क है। यह सड़क काफी चौड़ी है। इस सड़क पर बहुत से गाड़ी खड़ी है। यहाँ पर काफी छोटी गाड़ी हे। इस सड़क के किनारे एक पंडराल जैसा बना हे। यह चगरे की हे।